एक मूर्ति जो बीच में है वो बड़ा है और दो किनारे किनारे छोटा मूर्ति रखा हुआ है।

दुकान के किनारे बहुत सारे टायर को सजा कर रखा गया है।

तीन पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर में बहुत सारा सामान जैसे कूलर कुर्सी अलमारी गद्दा पंखा सब दिखाई दे रहा है।

रास्ते में एक व्यक्ति भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यह एक ट्रैक्टर के शोरूम का दृश्य है।

यह पूरे अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है।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

बिल्डिंग में बहोत सारा बैनर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और बाहर में कुछ दुकानें भी हैं।

स्टेज में ही ये डी_जे बॉक्स भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और स्टेज के नीचे बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है जिसमें बहोत सारे लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेटफाम पर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बच्चा और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

दोनों ने ऑरेंज रंग की ड्रेस पहनी हुई दिखाई दे रही है और पीले रंग का हेलमेट ।

अंदर में बहुत सारा समान शीशा का दिखाई दे रहा है।

यह एक हाल है हाल के अंदर में एक बर्थडे पॉइंट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक सोफा और चार टूल भी दिखाई दे रहा है।

टेबल भी है जिसमें एक पानी का बॉटल और कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तीनों पिलर में बहोत सारा रड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे लोहे का एक बड़ा रेक बनाया गया है रेक में छोटी छोटी बॉक्सेस भी बनाई गई है।

एक लंच बॉक्स और एक हरे रंग का डब्बा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहोत सारा लकड़ी दिखाई दे रहा है और यही लकड़ियों पे ये मोर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह बाइक का एक होंडा शोरूम का दृश्य है।